इस चित्र में बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी दुकान के बाहार रखे हैं उसके पास एक बोर्ड भी लगा है सामने कुछ और दुकाने भी हैं।

इसमे कुछ चार तरह की मिठाईयां रखी हुई है और बोहत सारे तरह का नमकीन भी रखा है।

इस चित्र में एक कैफे दिख रहा है कैफे के बाहर एक पार्क बना हुआ है।

चित्र मे तीन आदमी खड़े दिखाई दे रहे है सामने कुछ कुर्सियां भी लगी है।

पार्क में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है।